कुछ सामान रखेंगे जो कि सर के ऊपर रखी हैं चारो तरफ पानी भरा हुआ हैं जो की काले कलर का दिखाई दे रहा हैं।

घर है जिस के सामने कुछ कांच लगी हुई है एक खिड़की है जिसमे कांच लगी है सामने एक छोटी सी गेट हैं जोकी काले कलर की है।

एक दुकान है जो कॉपी किताब की दुकान है। उसमे किराने की दुकान भी है। चारो तरफ समान तंगी है। सामने कुछ बुक दिख रही है। और कुछ कॉपी है।

एक मूर्ति है जो की सिल्वर कलर की हैं।

और कुछ खंबे है जिनमे लाइट लगी हुई है। एक खंबा है जिस के उपर छोटी सी घर बनी है जिसके नीचे सीडी बनी है ये खंबे मे सं हरे कलर का पेंट हुआ है।

एक सड़क है जो की काफी पुराना सड़क है उसमे घास है जो की सुख चुकी है दोनों तरफ लोहे की पाइप लगी हुई है।